एक वाइट कलर का है जेंट्स राइट साइड | पेड़-पौधे भी खड़े हुए हैं हरे-भरे रेड कलर दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है एक घर है |

कुछ पुतले अंदर भी बैठे हुए है जेंट्स ।

दिख रहा है एक दूर खड़ा हुआ है जो वाइट कलर का है | उसपे एक सामने एक रेड कलर का भी कुछ लगा हुआ है बैनर टाइप का |

पोस्टर वैगरह लगा हुआ है।

एक गार्डन सा दिख रहा है उसमे हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहा है पहाड़ी दिख रही है बादल दिख रहे।

हम्म एक दीवाल है दीवाल के अंदर कुछ डेकोरेट हो रहा है फूलों का पिंक कलर का हो रहा है पिले कलर का चॉकलेट --

ऑरेंज कलर ग्रीन कलर ब्लैक कलर एक पन्नी भी रखी हुई है।

एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमे वाइट कलर की लाइटे लगी हुई है पंखा भी लगा हुआ है वाइट कलर का बेंच वाइट रेड कलर की।

कलर मैरून कलर रेड कलर येलो कलर चॉकलेटी कलर ।

एक दूकान दिखाई दे रही है उसमे एक जेंट्स अअ जेंट्स है एक कुर्सी रखी हुई --